आसमान जो है नीले कलर का है आज बाजू बहोत सारे पेड़ पौधे हैं अनेकों प्रकार के--

आजू बाजू सारी वस्तुएं लोहे की बनी हुई हैं वह तीनों रेत पर बैठे हुए हैं।